मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहें हैं।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

यहां मुझे कुछ पंखे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर मे मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा हैं।